ये फोटो में हमको एक दुकान दिखाई दे रहे--

जो कि लेखी विलेज में है और अरुणाचल प्रदेश में है।

ये फोटो में हमको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में जो हमको एक कच्चा घर दिखाई दे रहा हैं।

और ये बिल्डिंग का बाहर में बहुत ज़्यादा बाइक स्कूटी ये सब को पार्किंग कर के है।

सोफा का कलर सफेद और थोड़ा पिंक है यहां में जो वायर को जो लगाके दिखाई दे रहा है।

वो बरा सा पत्थर के ऊपर में एक आदमी बैठ के है।

टेबल में बुक्स ये सब रखे के हैं।

आगे मे लाल कलर का कपरा डिखाई डे रहा है।

और आगे में औरत दिखाई दे रहा है।

और वो जो लाल कलर का कारपेट के ऊपर में चिपके हैं।

जहां हमें आदमी लोग चलने का जगह दिखाई दे रहा है।

यह जो पूरा टाइल्स लगा के है।

ये फोटो में जो हमको एक रूम दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में हमको एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको बरा सा नदी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक औरत दिखाई दे रही--

ये फोटो में हमको बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ में शैडो सब भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में रेड ऑरेंज वाइट ये सब कलर का जो बैलून लगा के है।

इस फोटो में हमको एक ट्रेक्टर दिखाई दे रहे हैं।

वो ड्रम का आस पास ही बहुत ज्यादा मिट्टी सबको खोद के निकला के है।

आसमान का रंग जो नीला है।

और ये पेड़ का पत्ता का कलर जो ग्रीन है।

ये दुकान में ऊपर में पूरा लाइट्स बहुत ज्यादा जला के है।

उसके बाद जो आगे में स्ट्रेट लाइट भी जला--